यहाँ पर एक जे. सी. बी. दिख रही है जे. सी. बी. खुदाई कर रही है गड्ढा भी दिखा रहा है चेन बाली जे. सी. बी. है और यहाँ पर तीन लोग खड़े हुए है जो गड्ढे को देख रहे है।

यहाँ पे मुझे एक तालाब टाइप का दिख रहा है तालाब में ऐसा लग रहा है जैसे डिज़ाइन सा बना हुआ है।

ये यहाँ पे मुझे यामाहा का शोरूम दिख रहा है और यह यहाँ के इसके बाजू में कुछ बाइक खड़ी हुई है और यामाहा के शोरूम के जस्ट सामने--

यह विशाल मॉल की फोटो है जो की विशाल मॉल के सामने से ली गई है।

और उसका चश्मा भी दिख रहा है वॉलेट भी रखा हुआ है पर्स और अ पानी की बोतल भी रखी हुई है ऑनलाइन --

मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है पेड़े दिख रहे है घर दिख रहे है और ये घर में से सजावट की गई है।

इसके ऊपर में रतन लिखा हुआ है रतन एन्ग्लिश मे रतन फैंसी स्टोर लिखा हुआ है और एक बाइक भी खड़ी हुई--

यह क्लब विलेज लिखा हुआ है और यहाँ पर मुझे बहुत सारे कपड़े भी दिख रहे है।

यहाँ-यहाँ पर मुझे एक दूकान दिखाई दे रही है जोकि अंकुश आलू एवं अनाज भंडार ऊपर मे लिखा हुआ है और --

यहाँ पर मुझे एक के गे गेट नज़र आ रहा है जोकि थोड़ा सा खुला हुआ है।

यहाँ पे मुझ को ऐसी चाय वाली शॉप दिख रही है जोकि एक आदमी उसमे चाय भरते नज़र आ रहा वह मिट्टी का गिलास लिए हुए है।